मार्केट ऐ । बाजार लगा हुआ ऐ । लेडीज जा रही मुँह बंद करके। मोटरसाइकिल है। कार है ।

मंदिर दिखाई दे रहो है।